यहां बहुत सुंदर आ आ घ घर है।

वो लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे है ।

ये शूटिंग करने वाले शर्ट और --

इसके बगल में एक काले रंग का --

यहाँ एक गाड़ी खड़ा है ।

ईटा और बालू भी है यहाँ एक पाइप भी हो रही है यहाँ पे घर बना --

टेंट भी लगाए गए है ।